पेट्रोल पंप हैं रिलायंस का पेट्रोल पंप हैं क्यू क्या चीज का पेट्रोल पंप --

और इधर में भी है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पेट्रोल पंप का जैसे बैकग्राउंड है।

बहुत लोग कोई बाइक से आ रहा है कोई पैदल जा रहा है कोई साइकिल से आ रहा है।

और दो दुकानें हैं दो तीन सारे फूल बेच रहे हैं।

ये तालाब या ये नदी लगता है बहुत बड़ा नदी लग रहा है जैसे आदमी लोग--

सामने पेड़ पौधे हैं आगे पीछे पेड़ों की छाव पड़ रहा है तो जरा--

अ येलो कलर की बिल्डिंग है आगे पीछे और सामने में भी ये तुम्हारा वो है।

और अ बहुत बड़ा हॉल है आगे पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है।

बिल्डिंग में बैंक वगैरह खुलता है इसमें वही सिस्टम है।

बहुत सारा है फ्लैट्स भी है बिल्डिंग्स भी है रास्ता भी आदमी बाइक से जा रहा है कोई पैदल।

वो भी यही चाहते हैं आदमी लोग यहाँ पे रेडी कर रहे हैं तयार हो रहे हैं।

दोनों को कितना सुंदर सजाएंगे और माला भी पहनाएंगे बहोत सारे--

ओढ़ने के लिए नीचे व्हाइट कलर का चद्दर बिछाया गया है।

कोई भी बुक कोई भी कॉपी ले सकते हो बहुत बड़ा लाइक में बहुत सारी हैं यहाँ पे--

साइड मैं भी अच्छा हैं पौधा लगा हुआ हैं।